और कुछ शहनाज हुस्न लिखा हुआ है और एक कॉस्मेटिक दिखाई दे रहा है जो फेस वॉश है जिसमें गोल्ड प्लस लिखा हुआ है।

और कुछ डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं जो घर के बाहर रखे हुए हैं जो रेड कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं।

और एक ईटा का घर बना हुआ है जो हल्का मिट्टी कलर का है।

और आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक और वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए हैं।

और ये कुछ कर रहा है जिसके सामने कुछ बेंचें रखी हुई है जिसके ऊपर में कुछ पेपर दिखाई दे रहे हैं जो राउंड शेप में घूमे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और कुछ रूची गोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और ब्लू कलर के हैं।

और कुछ ब्लैक कलर के डब्बे रखे हुए हैं जिसमें किसी का फोटो बना हुआ है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है।

और ब्लैक और वाइट कलर का जूता पहना हुआ है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।